वाह क्या बात है कितना अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में देखने लायक लग रहा है की हां है देखने लायक कुछ चीज़ देखिए कितना अच्छा नजारा देखने के लिए मिल रहा है बहुत सुंदर नजारा मिल रहा है देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है बहुत झक्कास क्या बात है बहुत सुंदर है।

यहां पे हरा भरा दिख रहा है कितना अच्छा लग रहा है हरा भरा चीज़ यहां पे इतना मस्त है की मत मुझे बहुत सुंदर लग रहा है आप लोग भी देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है यह देखिए पौधा है यहां पहाड़ी है कितना मस्त लग रहा है ऐसे देखने में कितना झक्कास लग रहा है।

हमको भी सफर करने में बहुत अच्छा लगता है कहीं भी जाने में अच्छा लगता है लेकिन हमें तो मम्मी कहीं जाने ही नहीं देती है क्या बताएं बहुत सुंदर लोग --

जय माता रानी नमस्ते कर रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं सबके चरणों में सबको पूज रहे हैं दया कीजिए सब पर दया कीजिएगा सब पर कृपा कीजिएगा ।